ये एक सोसाइटी लग रही है बहोत बड़ी जहां बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं एक बड़ा झंडा दिखाई दे रहा है लहराते हुए दो डस्टबिन दिखाई दे रहे हैं।